यह बाइक लगाने वाला बाहर के है जो बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं। एक बाइक में हेलमेट लगा हुआ है।

बहोत अंदर जाके है बगल में एक पंडित जी हैं लाल कलर का मंदिर है और लाल कलर कलर का ग्रिल लगा हुआ है और मैट रखा हुआ है और पूरे अच्छे से सजाये हुए हैं बगल में पेटी --